यहाँ पे बस कहीं बस स्टेशन का जगह है। यहाँ पे ऑटो है दो ठो दो ठो ऑटो दिख ऑटो है बाइक है दो ठो बस लगा हुआ है पेड़ है उसके बाद से --

कलर ग्रीन है और की कहते हैं यहाँ पे एक वृक्ष है और यहाँ बहोत से मंदिर हैं आदमी लोग यहाँ कुछ-कुछ आदमी यहाँ पे दिख रहे है । बहोत ही स --